एक शटर दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

एक झरना दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

एक खिड़की दिखाई दे रही है।

हरी घास दिखाई दे रही है।

एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सूरज दिखाई दे रहा है।

ये इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे--